यह जालियों के पीछे खड़ी है इसके ऊपर लिखा--

पेड़ दिखाई दे रहा है उस--

खुला आसमान दिख रहा है सामने हरियाली भी दिख--

है। मशीनों के साथ--

है यहां बहुत सारा क्रियना का सामान रखा है।

इसमें हमे एक मॉल दिखाई दे रहा--

दूसरा व्यक्ति उसकी दाढ़ी बना रहा--

उसके पीछे दवाइयो के कुछ डिब्बे भी--

इस फोटो में एक दुकान दिखाई दे रही--

आई दे रही है इसमें एक--

एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही--